यहां गुब्बारा लगा हुआ है जिस प्रकार से यहां पार्टी वगैरा--

जिस प्रकार से एक व्यक्ति टी-शर्ट लाल पेहना है और--

कुए की तरह दिख रहा है चारों तरफ पत्थर--

यहां एम_पी फरीदाबाद रोडवेज --

ओं के डिज़ाइन बने हुए हैं जिसमें कि दो लोग--

गार्डन वगैरा समझ में आ रहा और--

स्टाम्प गड़े हुए हैं और आजू बाजू यहां की--

और दूसरा व्यक्ति इसकी बाल काटने के लिए--

छेसा दुकान देख रहा है जिसमें की--

मूर्ति दिख रहा है गौतम बुद्ध की मूर्ति--

मार्वल का और साइड में कब रखे हुए है नसैनी--

खम्मा लगा हुआ है लाइट का और ऊपर--